देख सकते हैं ये स्कूल है जो की यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे है देख सकते है कई बच्चे पढ़ रहे हैं कई बच्चे खेल रहे हैं और देख सकते है मास्टर भी आए हुए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए--

फ़ोन पे बात कर रहे है और देख सकते है साइड में एक बोतल र रखा हुआ है और देख सकते है वो कुर्सी भी है ये देख सकते है बहुत ही अच्छी तरह से मैदान को सजाया गया है पंडाल से और देख सकते है एक साइड में बैग भी है जो की खिलाड़ी लेकर आए है बहुत ही अच्छा है ये बैग वाला।

और देख सकते है कई लोग आये हुए है कपड़ा लेने के लिए और देख सकते है और दस रुपये में कपड़ा खरीद रहे है और देख सकते है ये कपडा दुकान बहुत ही बड़ा है।

अच्छा-अच्छा पेड़ भी लगे हुए हैं कई प्रकार के पेड़ हैं और देख सकते हैं और सभी लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं।